ये एक ऑफिस के बाहर की जगह है जहां पर कुछ चेयर्स लगी हुई है यहाँ पर एक आदमी बैठे हुए है राईट साइड में एक और चेयर दिखाई दे रही है जो कि स्टील की है जिसमे एक आदमी बैठा हुआ उसके पीछे के दीवार दिखाई दे रही है जिसमे स्टील की ग्रील लगी हुई है।

ऑटो के सामने एक नदी दिखाई दे रही है इसमें कुछ लोग नाहते हुए दिखाई दे रहे है नदी के किनारे बड़ी-सी व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।